पेड़ हैं गमले हैं और बहोत सुंदर--

येह दुकान अंबुजा सीमेंट का दिख रहा है।

अलग अलग तरह के ड्रम और बांसुरी है।

वह लोग बहोत सुंदर तरीके से--

यहां बड़े-बड़े लोहे के सरिए हैं।

यह बिल्डिंग किसी स्कूल या कॉलेज का लग रहा है।

आस पास पेड़ पौधे हैं बड़ी सी--

उसके बहार एक महिला साफ सफाई कर रही है।

यहां पर बहोत सुन्दर दृश्य हैं।

यहां पर एक जिम है।

यहां पर गणेशा दिख रहे हैं।

यहां पे स्वादिष्ट खाना मिलता है। रात का समय है।

बाथरूम जैसा लग रहा है।

यहां एक बड़ासा क्लिनिक है।

एक बूढ़ा आदमी अपना चेकअप करवा रहा है।

वेह अपना हेल्थ चेकअप --

यह एक मच्छी मार्केट है यहां पर लोग मच्छी लेने आते हैं।

यह एक जनरल स्टोर जैसा है।

इसमें दो बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं।